रिटेलर है जो की यहाँ पर अपने दुकान पे चीजों को सेल आउट करने के लिए --

ये हमें सामने दिखाई दे रहा है एक --

और व्यक्ति भी यहाँ पे कोई भी लेने के लिए आया नहीं है शायद से अभी यह दुकान खुली है नई-नई।

साइड से किसी मॉल का है या फिर किसी दफ्तर का | देख़ने मे काफी अच्छा है और दिन का समय है |

और ये चर्च जो है ये सफ़ेद रंग में है।

आलू बेचो है दो तीन तरह के होते है ये शायद देखने में लग रहे है पहाड़ी आलू।

किसी पहाड़ी एरिया का लगता है एरिया देखने में क्योंकि ये बहुत ही शानदार लग रहा है।

यहाँ पे लोग कई सारे लोग इक्कठे हो रखे हैं शायद से छठ पूजा के लिए इक्क्ठे हो रखे हैं।

कई सारे बच्चे जो हैं योगा कर रहे हैं।

और यहाँ पर जो है एक बोट भी खड़ी हुई है देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर अभी रात का समय है और दुकाने सब बंद हो चुकी है इलाका पूरा खाली है | दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा हमे यहाँ पे |

यहाँ पे दूर-दूर तक हमे कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है न कोई डॉक्टर ना कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है दिन का ही समय है और दिख रहा है की --

और आसपास ग्रीनरी काफी है ये शायद से पहाड़ों का अलाका है कोई --

पैनल बनाया हुआ है और दिखने में काफी आकर्षक है.

और लगता है देखने में किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन यहां पे है या फिर ये भी नया नया खुला है.

लग ये है सामने एक बुक स्टॉल जो कि ओपनली --

जिसके अंदर कई सारे लोग जो हैं आ रखे हैं।

मगर ये देखने में काफी बड़ी है और लोग यहाँ से च और आ रहे हैं।

शायद से यहाँ पे इनकी कोई भगवान या इष्ट देव की मूर्ति रखी हुई है।

वो बनता है इसके अंदर और घरों को बनाने में ये काम आता है काफी और ये बहुत ही महंगा आता है।

और शाम का ही समय है देखने में ये दृश्य काफी अच्छा और मनोरंजक है।

और ये है जो है खुले --

लेकिन शाम का ये समय है और कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर जो है किसी की मौजूदगी नहीं है।